ये एक ऑटो रिक्सा है। जिसमे हमलोग ट्रेवल करते हैं बस थोड़ा दूर के लिए एक से दो किलो मीटर ट्रेवल करते हैं जैसे स्टेशन जाना बस स्टैंड जाना वहाँ जाने के लिए बोहोत अच्छे होते हैं। इसमें अवाज वगेरा भी नहीं करते हैं। प्रदूषण भी नहीं होती है।

यह एक पार्क है जिसमें सभी लोग घूमने के लिए आते है और यहाँ का आनंद लेते है और बहुत मौज मस्ती करते है और बहुत अच्छी व्यू नजर आ रहे है बल्ब लगे हुए है और लाइट का फैसिलिटीज भी रहता है और रात में और मज़ा आता है घूमने के लिए।